कुछ पालड़ में काम करवा रहे हैं और एक उम्म जेंस उसे बाल कटिंग कर रहे हैं।

घर के मंदिर में पूजा हुआ है दिया जल रही है आरती हो चुका है।

यहां पे बहोत सारे बच्चे कराटे सीख रहे हैं।

देखने में बाहर से छोटा लग रहा है और एक पर्दा भी लगा हुआ है स्लाइडर --

ये बहोत अच्छा रेस्टोरेंट नजर आ रहा है बाहर से।

दो चार लोग एक बच्ची दो महिला नजर आ रही है गेट के बाहर--